इस पे भारत बेकरी लिखा हुआ है।

यहाँ पे एक सेन्ट्रल बैंक का शाखा दिखाई दे रहा है।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

हल्के नीले कलर का बैकग्राउंड कलर है।

जो की पिले कलर की कोर्ट पहने हुए है।

साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है।

बहोत ही अच्छा तस्वीर है यहाँ पे कोई भी आ के एक्सरसाइज कर सकता है।